कुर्सियाँ दिख रही हैं। बिजली का मीटर दिख रहा है।

इसमें घास दिख रही है आदमी दिख रहे हैं।

इसमे घास दिख रही है पेड़- पौधे दिख रहे हैं आसमान --

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।